वह साइड में वॉशिंग मशीन भी दिखाई पड़ रही है।

जिसने एक ब्लू कलर की सल्ट पहनी है।

उसके ऊपर व्हाइट से कुछ ऐसा लिखा है किया मोटर्स व कुछ गाड़ियां भी नजर आ रही हैं।

उसके ऊपर कुछ मग्गे व ग्लास भी रखे हुए हैं।

वह कुछ पेटियां भी नजर आ रही हैं।

वहाँ लोहे से बना कुछ सामान भी है।

यह एक चित्र है जहां पर्पल कलर का मैट वेह उसके बराबर में चॉकलेटी कलर का मैट पट पड़ा हुआ हैं।

वह कुछ गाड़ियां भी है परंतु एक ही गाड़ी के ऊपर कुछ सामान है।

उसके आसपास भी कुछ पेंस रखे हुए हैं।

उसके अंतर्गत कुछ मशीनें भी हमको दिखाई पड़ रही हैं जो लोहे से बनी हुई हैं।

उन पर सूरज की किरणे पड़ रही हैं।

व कुछ व्यक्ति वहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं।

यह एक चित्र है जहां बोहुत से व्यक्ति व बच्चे औरत नजर आ रही हैं।

वह एक बच्चा रेड कलर की शल्ट में दिखाई दे रहा है।

वे ऊपर में लाइट भी लगी हुई है।